पेस्ट्री शॉप है। जहां पर आपको अलग अलग--

बहोत सारे वीकल्स आते हैं।

बहोत सारी कार भी खड़ी--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

बहोत बड़ा इलाका है।